इस चित्र मे बहुत सारे फल दिखाई दे रहे है अनार केले सेब चीकू संतरे काले अंगूर पीछे की तरफ रखे दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे एक बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहाँ बड़ी बड़ी गाड़िया पेट्रोल भरवाने आई है कुछ व्यक्ति पेट्रोल भरते नजर आ रहे कुछ गाड़ियों मे इंतजार करते--

फिर है बहुत ऊंची-ऊंची बिल्डिंगे नजर आ रहे है।

इस चित्र मे सामने नीला आसमान और बहुत हरियाली दिखाई दे रही है ये चित्र खेत का लग रहा है आजूबाजू व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे--

पीछे की तरफ जरूरत का सामान रखा गया है सारी जरूरत का सामान एक ही जगह मिल जाता है।

इस चित्र मे व्यायामशाला दिखाई दे रही है सामने की तरफ बहुत सारी मशीने रखी हुई लोग व्यायाम करते नजर आ रहे है।

इस चित्र मे एक खेन का शेड दिखाई दे रहा है यहा पर लोग व्यक्ति खेल रहे नीचे की तरफ हरे रंग का कार्पेट शेड पुरा निले रंग का बना हुआ है।